ये एक रैली निकले वानी उमे सभी ने लाल रंग के कपड़े पहने बानी।

पीछे काले रंग के परदे लगे बानी उनके ऊपर ऐ.सी. लगी बानी।

उमे एक बड़ो पेड़ बानी आस-पास बहोत बड़े-बड़े पेड़ बानी।

इ एक झरनो बानी इमे दो तीन लईका नहात बानी ।

पास में गाड़ी रखे बानी उपे कई लयका बैठे बानी दोनो साईड पेड़ बानी।

पे बाल कटबावे का जे बैठे बानी।

इ एक बस स्टैंड बानी यहाँ पे मुल्लक की बसे खड़ी बानी।

उम्म मर्द बेठे बानी उके सर पे टोपी बानी सामने एक घड़ी बानी ऊपर पंखा लगे बानी।

इके पास में घर बानी उमे दो खिड़की बानी उका रंग हरा बानी पेड़-पौधे लगे बानी।

पंखा लगे बानी नीचे बहुत सारी कुर्सी रखे बानी लाईटे बानी।

पानी गिरा रहा हुआ है पेड़-पोधे लगे हैं गाड़ी भी निकल रही है और इ --

इ लइका-लइकी के पास में एक कंपास रखे बानी।

इ एक गार्डन बानी इमे लाईट लगल बानी इके गेट पे इ के गेट पे फूकना लगन बानी।

इ एक ए.टी.एम. बानी इके पास में मूलक बड़ी लाइन लगी बानी।

इ एक बहुत सुन्दर और बड़ा घर बानी इका रंग सफ़ेद बानी इके गेट के बाहर एक --

ई एक स्कुल बानी इके सामने एक प्रिंसिपल का --

इके गेट में कांच लगे वानी इका रंग पिला और निला वानी।

इ एक होटल बानी इमे लाईट लगेवानी इमे बड़े-बड़े सोफा रखेवानी।